यह बहुत ही अच्छा एवं बहुत ही मनमोहक चित्र देखने में लग रहा है जो मन को प्रफुल्लित कर दे रहा है।

यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एवं बहुत ही बच्चे खेल रहे हैं और यह एक --

यह एक राशन का दुकान देखने को मिल रहा है जहाँ पे कुरकुरे चि --

राष्ट्र लीची अनुसासन अनुसंधन केंद्र महसूरी मुजफ़्फ़रपुर बिहार।